यहाँ पर एक बहुत सारी यहाँ पर महिलायें खड़ी हुई हैं और बैठी भी हुई है यहाँ पर | बच्चे भी हैं यहाँ पर और यहाँ पर बैलून से डेकोरेशन भी किया गया है। बैलून और यहाँ पर --

सामने एक क्रेट भी रखी है उसमें भी बहुत सारी मच्छियाँ रखी हुई है उसने अपने सर पे रुमाल बांध के रखा --

यहाँ पर एक आं स्कूल टाइप या कुछ बिल्डिंग टाइप की दिख रही है | यहाँ पर बहुत सारी महिलाये खड़ी हुई है।

यहाँ पीछे बोर्ड भी लगा है किसी का जो चीज़े यहाँ पे हो रही है उस चीज़े का यहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ है उसके कैप भी लगा हुआ है पीछे की तरफ वह खड़ा हुआ है।

यहाँ पर एक अ मैरिज हॉल वगैरा लग रहा है यहाँ पर शादी वगैरा हो रही है यहाँ पर द्वारपाल दो डंडे लेके खड़े हुए हैं जिन्होंने वाइट येलो कलर की अ टोपी पहनी हुई है और यहाँ पर उन्होंने पिंक कलर का सूट दोनों ने पहना हुआ है।

यहां पर एक लड़का खड़ा हुआ है पेड़ों के उस साइड यहां पर बोहोत सारे गमले वगेरा यहां पर रखे हुए हैं यहां पर अ फूल भी यहां पर रखे हुए है यहां पर एक चेयर वो भी रेड कलर की रखी हुई है।

यहाँ पर अ बहुत से लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर एक पेड़ भी दिख रहा है बहुत बड़ा और यहाँ पर कुछ फसल ने की जगह यहाँ पर दिख रही है। एक शॉप भी आगे दिख रही है।